--एक जो एक आदमी एक दरवाजा है वो खुला हुआ हैं आधा और उसके सामने दो लोग घूम रहे है दिखाई दे रहे

देखिए आपको एक चट्टान बहुत बड़ा पत्थर देख रहे हो इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है नीचे आपको काफी हाइट पे बैठा हुआ जो आदमी दिख रहा है।